बढ़िया चमच्च लगी है दो आदमी बैठ उनके हाथ दिख रहे हेंगे ।

ऊपर नीचे देखने में बहुत मस्त लग रो --

एक क्रिश्चियन वालो ने स्थान बनो है।

देख रहा हैं। पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे।

सामाने जे कोई सभा चलत दिखाई दे रही है।

अगल-बगल में कहासत लगी है गी --